दुकान जैसी लग रही है यहां पर बहुत सा सामान बिखरा पड़ा हुआ है।

वह रेड कलर की है यहां पर डिब्बे रखे हुए हैं।

यहां पे तीन आदमी खड़े हुए हैं एक पेड़ लगा हुआ है।

यह एक लोहे का पूल बना हुआ है जिसमे ऑरेंज कलर की पट्टियां लगी हुई है।

जो ऑरेंज रेड ग्रीन कलर के हैं।